और आस पास से पत्थर ही पत्थर है। आसमान नजर आ रहा है और प् यहाँ पर बॉउन्ड्री नजर आ रही है।

पानी नजर आ रहा है बावन्ड्री नजर आ रही है और पानी है र ओ और कुछ पथर रखे हुएं हैं।

फ्लोर नजर आ रहा है और अ तीनो बुलेट हैं। कांच नजर आ रहा है।